साइन बोर्ड लगा हुआ हैं यहां पर एक धीरे धीरे चलो करके धीरे धीरे कैंप एरिया कैंप एरिया ये कोई गो स्लो कैंप एरिया कैंप एरिया में स्लो धीरे चलने के लिए बोला गया है यहां पे बोर्ड पे लिखा गया है जो साइन बोर्ड हैं जो--

ये ऑफिस है ऑफिस में कुर्सियाँ लगी हुई है और कुर्सियाँ लगी हुई हैं टेबल लगा हुआ है और टेबल पे ये काफी सारी फाइल्स हैं और सामने जो मिरर पे ट्रक जैसा लग रहा है ट्रक है कोई गाड़ी भी है और ऐसे ही कई टेबल लगी हुई है ऑफिस या फिर कोई रेस्टोरेंट टाइप है ये छोटा।

ये गाड़ी हैं दो गाड़ियों हां ऐसे ही कुछ है वो गाड़ी के सामने दुकान है दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा है साइन बोर्ड कार के एक्सेसरीज़ मिलती हैं यहां पे जो भी गाड़ी की एक्सेसरीज़ वगैरा होती हैं यहां पे मिलती है दुकान पे वही दुकान है ये--

सुबह-सुबह का टाइम लग रहा है ठंड का टाइम है बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है और ये रोड है कोई सड़क है कोई जाती हुई और यहाँ पेड़ पौधे भी हैं काफी धुंधला-धुंधला दिख रहा है ये कोहरे की वजह से।

जिम है ये और जिम की ये मशीन है और मशीन में मेरे ख्याल से पुल डाउन करने वाली मशीन है ये मैं इसमें तीन मशीने देख पा रहा हूं काफी बढ़िया मशीन है नई मशीन लग रही नई इक्विपमेंट है जिम के ये।

ये सीमेंट वगैरह रखा हुआ है और कोई कट्टे वगैरह हैं किसान गेहूँ वगैरह राशन वगैरह होता है किसान सेवा करके लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर और एक लिखा है कि यहाँ पर किसान सेवा केंद्र किसान सेवा केंद्र किसान की सेवा के लिए किसान को हेल्प करने के रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग ये केंद्र है कोई।